और देखिये बलून पिंक और येलो कलर की बलून से इसको --

और देखिये यहाँ पे एक कटे का निशान है कटिंग जो है ।

यह निचे से चाहड़ने के लिए --